इस घर के सामने एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जो पिंक कलर की है उस पर एक हरे कलर की नी डली हुई है।

यहाँ पर हमें एक बैंक दिखाई दे रही है जिस का नाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है।

यहाँ पर हमे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में हमे कुछ लोग टहैलते हुए नजर आ रहै है।

यहाँ पर हमे कुछ कार भी दिखाई दे रही है स्कूल की बसे भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

मॉल का कलर सफेद ए और काला दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पुतले भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ फर्श भी दिखाई दे रहे है कुछ डोरियां भी है कुछ माइक भी दिखाई दे रहे है।

उन पेड़ों की डालियाँ पानी में गिरती हुई नजर आ रही है यहाँ --

और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है जो बड़े है या कुछ छोटे है।

यहाँ हमे चर्च एक दिखाई दे रहा है जिसके आगे हमे कुछ छोटे-छोटे मुर्तिया भी दिखाई दे रहे है।

पीले कलर का है और कत्थे कलर का यहाँ पर कुछ टेबले रखे हुए है जो काले कलर की है यहाँ पर कुछ लोग--

यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर सफ़ेद कलर का है।

कुछ काले कलर के तो कुछ लाल कलर के टंगे हुए दिखाई दे रहे है नीचे टाइल्से भी लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है कुछ पोए पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमे एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पर हमे कुछ बसे खड़ी हुई नज़र आ रही है।